सामने दिख रहा दृश्य मुझे किसी सड़क का दृश्य लग रहा --

है जिस सड़क पर बहुत से रिक्शा व--

सामने दिख रही फोटो में मुझे एक --

गार्डन नजर आ रहा है।

सामने मुझे एक शॉप है नजर --

सामने मुझे कोई बड़ा ऑफिस नजर --

सामने मुझे कोई लाइटिंग का--

मंदिर के ऊपर बहुत सारी लाईटिंग --

जिस दुकान में मुझे एक--

सामने मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही --

फूलों से सजावट की हुई नजर आ रही है।

है जिस सड़क पर मुझे बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही --

जिस पार्क के पास दो लोग जा रहे --

मुझे सामने बहोत सी बसे नजर आ रही --